कुर्सियां दिखाई दे रही हैं और--

और यहां पे जंगला भी दिख रहा है।

यह एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

बहोत बहोत सारा सरिए का जाल दिखाई दे रहा है और खाली जमीन दिखाई दे रही है मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है।

सफेद कपड़े पहने हुए हैं वॉल दिख रही है वॉल में जीजस की साइन लगी है।

और रोड पे बाइक्स दिख रही हैं बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

ये बहुत सारी दुकाने दिखाई दे रही है।

ये एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है झंडा भी दिख रहा --

पेड़ दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।